ये एक इमारत है इमारत के साथ ही रोड गुजर रहा है बहुत सारे लोग अपनी-अपनी गाड़ियों--

और एक बोर्ड लगा हुआ है साथ पानी वाली टूटी भी लगी हुई है एक जंजीर भी है।

नीले रंग की शर्ट और लाल रंग का बैग टंगा हुआ है जिस शख्स सामनेसे आ रहा उसने गुलाबी रंग शर्ट और काले रंग का पैंट पहने हुए है ।

बड़े-बड़े दरख्त पौधे फूल बूटे लगे हुए हैं पानी नीले कलर का बहुत ही खूबसूरत महसूस हो रहा है।